और कुछ लोग सेल्फी खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर लाइट के खम्भे भी नज़र आ रहे हैं।

जो की पेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक पर्पल एक ब्लू और एक पिंक और एक ग्रीन और एक रेड कलर की साड़ी नजर आ रही है।

और कुछ बैंक भी नज़र आ रहे है।

यहां कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए दिख रहे हैं।

और कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सी गैय्या नजर आ रही है।

और यहां बहुत सी टिने भी दिखाई दे रही है।

और इनके लोगों के हाथ में फोन भी--

इस चित्र में बहोतसे लोग नज़र आ रहे हैं।

जो कि फूलों के पास खड़ा होकर अपनी फोटो खिंचवा रहा है।

और कुछ मूर्तियां भी दिखाई दे रही हैं।

और यहां कलर -कलर की लाइटें भी लगी हुई नजर आ रही है।

और यहां तरबूज़ भी नज़र आ रहे हैं।

के ब्रिज पर जाते हुए दिख रहा है।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

और कुछ गाउन भी नजर आ रही है जो ब्लू और ब्लैक कलर की है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक इलेक्ट्रिकल दुकान निकल आ रही हैं।

जिसके पास में कुछ कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

चित्र में बहोत से शॉप नजर आ रहे हैं।

और यहां फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

और यहां साइड में बहुत सी गाड़ियां भी चलती हुई दिखाई दे रही है।

और पीछे भी कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।